ये तो देखने में बहुत ही सुन्दर लग रहा है जिसमे प्राकतिक सारी सुन्दरताएं दिख रही है।

अब बड़ा साइज में जाने दरवाजा है।

कुर्सी है जिसमें एक बेंच पे आदमी आदमी सॉरी बच्चे सब खा रहें हैं।

ये एक घर है जिसमें जाने के लिए दो बड़े-बड़े गेट हैं। एक छोटा गेट है एक बड़ा गेट है।

ये एक पढ़ाई का घर लग रहा है जिसमे बहुत से बड़े बड़े ब्लैकबर्ड हैं।

ये एक साडी का दूकान है जिसे बहोत ही सुन्दर-सुन्दर जड़ी-बूटी साड़ी रखे हैं।

जिसमें आदमी डेली यूज का सामान र-रैक में बहुत सुन्दर से सजाया हुआ है।

सुंदरता दिख रही है बड़े-बड़े पेड़ हैं। बहुत सुन्दर हरियाली है।

ये एक बाईपास रोड है जिसमें रोड चौड़ा बहुत ही चौड़ा है जिसमें दो एक साथ दो गाड़ियाँ आ सकती हैं।

बहुत ही बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है स्कूल का नाम। सामने दो बड़े गेट हैं।

एक लाइन से लैपटॉप है किताबों की बहुत सुन्दर रेक है।

ईटा का बनाया हुआ है उसके उपर बहुत ही सुन्दर मूर्ति बनाई हुई है जो घोड़े पर महाराणा प्रताप जी हैं।